हमें बहोत सारे गाड़ी मोटर्स और स्कूटरस नजर आ रहे हैं।

ये छवि में हमें एक बड़ा सा रस्ता दिखाया गया है।

दूर में हमें एक बड़ा सा बैनर नजर आ रहा है और बड़े बड़े पेड़ नजर आ रहे हैं।

इस छबि में हमें एक बड़ा सा मंदिर दिखाया गया है मंदिर के बाहर हमें बहुत सारे औरत और पुरुष नजर आ रहा है।

इस छवि में हमें एक बड़ा सा दुकान दिखाया गया है।

कुछ लोग नजर आ रहे हैं।

छवि में हमें एक रेस्टोरेंट दिखाया गया है।

वहां पे हमें चार बड़े बड़े फायर ब्रिगेड ट्रक्स रखे हुए नजर आ रहे हैं।

बाथरूम के अंदर हमें एक बाल्टी और एक मग नजर आ रहा है।

एक नल नजर आ रहा है।

ई रिश्का नजर आ रहा है।

वहां पर हमें एक मोटरसाइकिल और एक ऑटो रिक्शा रखा हुआ नजर आ रहा है।